इस चित्र में हम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का ए_टी_एम मशीन देख सकते है इसका मतलब ए_टी_एम का मतलब ऑटोमैटिक टेलर मशीन है जिससे हम अपने पैसे निकाल सकते है ए_टी_एम कार्ड के द्वारा--

हम देख सकते है की यह मैरीज हॉल है जहांँ पर शादी होती है और यहाँ पर हम देख सकते है स्टेज मे बड़ी खूबसूरती से गुलाबी रंग से अ--फूलों से सजाया और सवारा गया हैं ।

इस चित्र में हम यह देख सकते है की ये एक चर्च है जहाँ पर अ मेरिकोरे मूर्ति मौजूद है और यहाँ पर कई सारी महिलाएं अ प्रे करती दिखाई दे रही हैं ।